यहाँ पे कुछ बलून्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लू रेड और वाइट है।

यहाँ पे लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है और खंबे (खंभे) वगैरा भी लगे हैं।

और चद्दर शीट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। माकन भी बने हुए हैं। इनकी दीवार का कलर वाइट है।

ई बिजली की तार भी दिखाई दे रही है। कुछ बाइक वगैरा भी रखे हुए हैं।

यहाँ पे उजाला भी दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

ये कुछ पैकिट्स भी रखे हुए हैं। रेस वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मूर्ति भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। जिसमें बहोत सारी बसें खड़ी हुई हैं और लाइट भी जलती हुई दिखाई दे --

यहाँ पे बहोत सारे मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी दिवाल का कलर व्हाइट --

पे बिजली का खम्भा भी दिखाई दे रहा है और लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे जमीन भी दिखाई दे डांस कर रही जिसने रेड कलर कपड़े पहने हुए है।

चार लोग खड़े हुए है। रोड भी दिखाई दे रहा है।

यहा पे रोड दिखाई दे रहा है। बहोत सारी बिल्डिंगे भी बनी हुई।

यहा पे (पर) बहोत (बहुत) सारी बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही है जिनका कलर व्हाइट है।